पिक्चर में हमें एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारी स्वेटर टंगी हुई है कुछ स्वेटर टेबल पर रखी हुई है तो कुछ स्वेटर टंगी हुई है और --